जैसा की देख सकते है बोहोत कलर के यहाँ पे बैलून लगाए गए है और यहाँ पै एक फैन और खड़िकी भी लगी हुई हैं।

यह तिवारी जी का एक स्टोर है। जहाँ पे बहोत सारे क्वालिटी का समान मिलता है।